बहुत सारे यहां पर आदमी सब भी है।

ये सब लगाया गया हुआ है।

दो बच्चा बैठे हुए हैं बच्चा के पीछे में हमें यहां पर एक--

एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी है। टेबल पर रखा हुआ है।

सीप है सब चारों तरफ।

हमें समुद्र में पानी देखने को मिल रहा है।

दुकान के अंदर हमें टेबल सब रख है।

पेयर सब हैमोमोस ।

टेबल के सामने में बहुत सारे--

हाइट करके लिखा हुआ है जिसके ऊपर--

सोखा टेबल सब फसा हुआ है।

यहां पे हरा रंग था मैट है ब्लू रंग था।

यहां पे एक सीधी है सीधी का रंग काला है सीधी के बदल में यहां पे एक।

नदी में बहुत सारा पत्थर सब है।

रोती है बहुत सारे आदमी सब है जब भीर लड़ा हुआ है।

आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे सब बने हुए हैं यहां--

औरत ने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

उसके सामने में एक गेट है।